यहां पर दो छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं और इस आदमी के सर पर एक टोकरा रखा हुआ है।

ये तस्वीर एक नदी की है जिसने बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

यहां एक मोटरसायकल भी खड़ी हुई है।

ये तस्वीर एक रिसेप्शन एरिया की है।

इसमें बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं और यहां नीले रंग के पर्दे लगाए गए हैं।

और एक छत के नीचे इनको रखा गया है।

और कई झंडे भी लगे हुए हैं।

जो कि आर_ओ मशीन के हो सकते हैं।

ये तस्वीर बहोत बड़े दुकान की है।

और यहां कई छोटे बड़े फिश पॉट भी--

ये तस्वीर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की है।

ये तस्वीर कई औरतों की है इन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

बहोत सारे हरे पेड़ और पौधे लगे हुए है।

ये तस्वीर बहौत बड़े पारक की है इसमें हरि घास--

सफेद रंग के और लाल रंग के हैं।

ये तस्वीर एक दुकान की है इसमें बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

हॉस्पिटल की है इसमें बहोत सारे सोफे रखे हुए हैं।

यह तस्वीर बहुत बड़ी दुकान की है।

ये तस्वीर बहोत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें--

इसमें बहुत बड़े कुर्सी और टेबल --

ये तस्वीर बहोत बड़े रशियन बैंक की है यहां--

यह तस्वीर एक दुकान की है।